सब खूब जरा जल नदी बा अगल-बगल घर बा लउकत बा पानी बा सब फिरवा वो मे नाई बा।

पेड़ बाटे नीम के पेड़ हउए छोटे-छोटे पेड़ बा कूल जामल बा घाँस पात बा। बागीइचा हउए निक बाटे हरिहर हरिहर चारों ओर खंबा गारल बा।

अ मज हाल अउ मज हाल में शादी -बिवाह होता कुर्सी बाटे ऐजा खान-पान होई बहोत बढ़िया सजावल बा लकड़ी सुखल बांध बांध के --

रखल बा। लाईट बा। टाइल्स लागल बा। कुर्सी बाटे। कुर्सी सफ़ेद कलर में पानल बा। मेज बा।